यहाँ पे सोलन के अंदर बहुत सारे गुबारे लगाए गए हैं।

जो वाइट रेड एंड ब्लू कलर के हैं कांच के बहुत सारे रेक भी बनाए गए हैं।

यहाँ सनलाइट सी दिखाई दे रही हैं।

एक वाइट कलर का फैन लगा हुआ है छत के ऊपर--

कुछ डाइनिंग टेबल पर टमाटर काट के रखे हुए हैं जग रखा है नमक रखा हुआ है।

नदी के किनारे बहुत सारे पेर पौधे भी दिखाई दे रहे हैं नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

इसमें नेट टांगा हुआ है वाइट कलर का कुछ बेंगल्स भी लगाया गया है।

जहाँ पे छे सात स्टाफ डॉक्टर्स --

दुकान के अंदर बहुत सारे रिक बनाए गए हैं लकड़ी के --

कुछ रिक कांच के भी बनाए गए हैं।

बहुत सारे कॉपी या बुक्स रखे गए हैं।

कुछ गोल्डन कलर का किया गया है आसमानी नीला दिखाई दे रहा है।

बैठे हुए हैं कुछ लोग आ जा रहे हैं कुछ गाड़ियां भी लगी गाड़ियां वाइट कलर की है।

इस पे बेडशीट या गद्दा बिछाया गया है।

मं मंदिर गौतम बुद्ध का है जिसमें तीन मूर्तियां बैठाई गई है।

वाइट कलर का दिखाई दे रहा मंदिर रंग बिरंगा है।

मंदिर की दिवारे रंग बिरंगे से पेंट किया गया है।

ब्राउन कलर के इसमें बहुत सारे रेक बनाए गए हैं रेक पे बहुत सारे--

इसमें टेडी बियर भी है कुछ लाइट्स भी लगाई गई है ऊपर के.--

इसमें कुछ हिरने वाइट है कुछ ब्राउन है।

पीछे एक मेड सा रखा गया है यहाँ पे बहुत सारा लड़का लड़की है जो --

बेंच और टैबल पर बैठे हुए हैं यहां पे कुछ लिख रहे हैं टेबल लकड़ी का है।

पहाड़ पे बहुत छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं दूर से।

कुछ ईंट के दीवार भी दिखाई दे रहे हैं।

रेक अंदर रेक के अंदर की दीवारें स्काई ब्लू से रंगर पेंट हुआ है रेक ब्राउन कलर के दिख रहे हैं।

हल्का इसमें मेरून कलर भी लगाया गया है।

ब्रेक में बहुत सारे सामान भी रखे गए हैं पेन्स --

मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

येलो कलर का जिसपे बहुत बड़ा-बड़ा पोस्टर लगाया गया है दोनों तरफ--

हल्का वाइट कलर का है संगमरमर का है शायद ऊपर के छत का भी फर्स वाइट कलर का है जिसमें बहुत सारी लाइट्स लगाई गई है एक बड़ा सा--

ये फोटो किसी ग्राउंड का है या किसी फील्ड का है।

यहाँ पर पीछे के भी पैर दिख रहे हैं कछुआ के कछुआ के बगल में छोटा सा कुछ रखा गया है।

ऑफिस के अंदर एक कुर्सी रखी गई है जो ब्लैक कलर की है।

ब्लैक कलर का ही काउंटर या टेबल बनाया गया है।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

बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई जो दे रहा है जो दूर-दूर से दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बाइक्स भी दिखाई दे रही है कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है सामने।

क्रीम कलर के एंड ब्लैक कलर के है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे-बच्चियाँ पढ़ रहे हैं।

पेट्रोल पंप के आगे एक आटो लगी हुई है।

येलो एंड नीला है आसमान नीला दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधे भी हैं कुछ बिजली टावर्स भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइटेज भी दिखाई दे रही है।

गंगा नदी के बीच में एक नाव खड़ी है लकड़ी की।